कुत्ता एक सिल्वर कलर के बोर्ड पर खड़ा है उसके पीछे दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की।

में एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही है हमें तीन लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं उसके आगे हमें एक और गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

एक फ्रिज दिखाई दे रहा है हमे बहोत सारी टेबल दिखाई दे रही हैं जिस पर बहोत सारे सॉसेज और कुर्सियां रखी हुईं है।

एक हमें बाइसेप्स का पोस्टर भी नजर आ रहा है पीछे हमें खिड़की भी नज दिखाई दे रही है।

हमें पीछे देखने पर नीली लाइट नजर आ रही है एक शीशा नजर आ रहा है।

इस फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमे बहोत सारी बहोत सारी मिर्ची का ढेर नजर आ रहा है जिसमें कुछ--

पीछे हमें एक पेठी भी दिखाई दे रही है जिसमें आलू भी रखे हुए हैं और हमें मटर भी थोड़ी बहोत दिखाई दे रही हैं।

और नीचे लिखा हुआ है खुशमंडी डेवलपमेंट ब्लॉक हमें एक ऊपर एक घड़ी नजर आ रही है हमें एक आदमी भी दिख रहा है।

उनका रंग सफेद और सिल्वर कलर का है।

एक शेल्व्स में हमें बहुत सारे बाजे दिखाई दे रहे हैं और दूस शेल्व्स में बाजों का पार्ट दिखाई दे रहा है ऊपर हमें बहुत सारे बैंड दिखाई दे रहे हैं।

में रंग बिरंगे टेप भी लटके हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें एक दुपट्टा भी दिखाई दे रहा है।

हमें एक पोस्टर नजर आ रहा है जिसपे पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ है हमें कई सारी कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं जिनका रंग लाल है।

हमें और भी सारे लोग नजर आ रहे हैं और हमें पीछे देखने पर बिल्डिंगों पर झालरें लगी हुई नजर आ रही हैं झालरों का रंग--

उसके ऊपर एक बैनर भी लगा हुआ है जिस पे लिखा है होटल नाइट इन शिलौंग हमें एक नींबू मिर्ची भी लटकी हुई दिखाई दे रही है।

और हमें एक बच्चा की नजर आ रहा है जिसने एक और छोटा बच्चा अपनी गोदी में लिया हुआ है।

काला है हमें एक पोस्टर रखा हुआ नजर आ रहा है जिसपे पावर एंड प्राइड

ये गद्दा रखा हुआ दिखाई दे रहा है इधर हमें एक टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है जिसपे एक गद्दा मुड़ा हुआ रखा है।

एक एल_ई_डी में कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है दूसरी एल_ई_डी में एक आदमी का फोटो दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमें कई सारे छोटे छोटे गमले भी नीचे रखे हुए नजर आ रहे हैं।

हमे कुछ गमले हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं सामने हमें एक छोटा सा दीवार पर लगा हुआ मंदिर भी नजर आ रहा है एक हमें एक दो कुर्सियां भी रखी हुई नजर रही है हमें खिड़की दिख रही है हमें छोटे छोटे --

फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें एक बहुत बड़ा हाथी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने बहुत बड़ा डंडा ले रखा है।

और अंदर हमे बहोत सारी झालरें टंगी हुई नजर आ रही है और बहोत सारा बिजली का सामान दिख रहा है।